ये हमारा स्टेशन हैं जिसमे रेल गाड़ी चलती हैं और ये स्टेशन बहुत साफ सुथरा रखा जाता हैं क्यूंकि ये अभी हाल फिलहाल बना है इसमें काफी लाइटें भी दी गई हैं

ये एक इसाइयों का मंदिर हैं जो काफी अच्छा काफी बड़ा इसकी खिड़कियाँ कितनी अच्छे है।

ये एक चिड़िया घर है जो काफी अच्छा है और काफी बड़ा है।

जो जिसमे बहुत तरह के जानवर रहते है इसमें से गिद्धड़ उ इट ऊट सब रहते है और काफी अच्छे हैं और ये बहुत साफ - सुथरा चिड़िया घर है और सबसे बड़ा।

ये एक माल गाड़ी हैं जो हमारे गाँव से होके गुजरती हैं जो इसमें काफी सारी सामाने रखी रहती है और सबसे ज्यादा रेल्वे को यही फाईदा दिलाती हैं स--

मैकेनिकल जो है वो बहुत अच्छे है और यहाँ दो-दो बजे से ले के रात के दस बजे तक दुकान खुली रहती है।

जो छे बजे सुबह से लेकर रात के आँठ बजे तक खुला हुआ रहता है और एक दिन तालाब पे रेंट लगा हुआ है।

कुछ दिन में इसे साफ करा लिया जाएगा जो अ-और भी खूबसूरत लगेगी देखने में।

ये हमारी गाँव की गंगा जी हैं जो काफी सूख गयी हैं। यहाँ पे काफी लोग स्नान के लिए आते हैं और छठ पर्व में भी का यही पे बनाया जाता है।

ये हमारा शहर का होटल हैं जो काफी अच्छा काफी बड़ा हैं ये अभी एक दो दिन में ही ओपन हुआ हैं जिसकी बेड भी काफी अच्छी है और गद्दा भी इसका बहुत अच्छा--

अस जगह बनाया गया है जिस पे यहाँ पे रोज मैच होता है और बहोत सारे बच्चे मैच खेलने आते हैं।